यहाँ पर एक रास्ता दिख रहा है जहाँ पर वो मोटर साईकल खड़ी है वहाँ एक रीक्षा दिख रहा है नीचे कुछ पत्थर पड़े है आगे की तरफ--